इस मॉल का है जहाँ अंदर थिएटर है मॉल के अंदर पूरा मल्टीप्लेक्स रेड कलर का पूरा सीट लगा है और बड़ा सा पर्दा है पूरी तरफ बॉक्स वाक्स लगा हुआ है ।

ये बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पीछे बहुत सारे पेड़ है बहुत ही बड़ा ज्यादा ही मैदान हैएक लड़का खड़े होकर कुछ बोल रहा है और नीचे रस्सी दिख रहा है और पूरा खाली जगह है|